में दो तीन व्यक्ति खड़े हुए है जिसमे से एक ने ब्लैक कलर की चादर ओढ रखी है।

ऊपर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं फास्ट फूड के--

ये देश के शहीदों की है जिनमें रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह भी हैं नीचे माता की तस्वीर लगाई गई है।

टेबल पर कंप्यूटर्स रखे गए हैं।

नीचे रैक में कुछ थैले रखे हुए हैं।

तरफ सड़क पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है सामने एक पेड़ है।

है उसके पीछे एक लंबा सा फ्रिज है जिसमें कोल्डड्रिंक रखी हुई है।

उसके पीछे एक बिल्डिंग है जिस पर येलो और रेड कलर से पेंट किया गया--

यह एक मैरिज हॉल है जिसमें सामने एक लड़का जाते हुए दिखाई दे रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई--

एक फूलों के खेत में खड़ा हुआ है।

ऊपर कुछ झूमरे भी टांगे गए हैं।

सामने एक बड़ा सा हॉल है जिसमें व्हाइट कलर की बहोत सारी चीयर्स रखी हुई है।